यहां सामने में पानी दिखाई दे रहा है यहां पे कुछ बोया हुआ है दा गेहू वगैरह --

यहाँ पे कुछ विंडोज जैसी दिखाई दे रही एक लड़की बैठी हुई है वहाँ पे एक गमला है।

घर वगैरे भी थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है वहाँ पे बहुत सारे लाइटस भी जल रही है और यहाँ पे --

ब्लैक और पीला कलर के है और यहाँ पे कु --

और यहाँ पे दो चेयर्स भी हैं दो सॉरी दो यहाँ पे --

कार्स वर्ल्ड शॉप लिखा हुआ है और कुछ भी लिख --

यहाँ सामने में रोड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे दो बोलेरो दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे एक कलर की बोलेरो दिखाई दे रही है और यहाँ पे बहुत सारे --

यहाँ पे घर जैसा दिखाई दे रहाहै लेकिन ये मॉल है ।

ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है सामने में एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

यहाँ पे एक दुकान दिखाई दे रहा है जिसका बड़ा-बड़ा डब्बा सामान के ऊपर रखा हुआ है।

यहां पे एक बिछने वाला है जिसपे बच्चे खेलते हैं।

एक व्हाइट कलर की कार दिखाई दे रही है इधर साइड में एक --

खड़े दिखाई दे रहे हैं कुछ विंडोज भी दिखाई दे रहा हैं और यहाँ पे कुछ-कुछ --

और नीचे में है जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है जिस पे यहाँ --

ए.टी.एम. लिखा हुआ है और यहाँ पे इंग्लिश में भी स्टेट बैंक --

ए.टी.एम. लिखा हुआ है और यहाँ ऊपर में जो घर है व्हाइट --